गाइज ये देखिए इस इमेज में हमे दिख रहा है कि ये एक लायन है जो पिंजड़े में उम्म पिंजरे के अंदर बैठा हुआ है लेटा हुआ और देख रहा है।

जालीदार कुछ लगा हुआ है एक मंदिर टाइप का दिख रहा है ।

लाइट जल रही है छोटी-छोटी ग्रीन कलर की कुछ हैं।

और लेडिज भी दिख रही है और यहाँ खुला आसमान है और तारे दिख रही बड़े-बड़े।

और हरी-हरी भरी घासे दिख रही हैं खुला आसमान दिख रहा है और दूर-दूर पहाड़े नजर आ रही है और नाव दिख रही है एक और ब्लू कलर --

और पोस्टर्स लगे हैं बड़े-बड़े बहुत सारी साइकिल्स हैं बाइक्स खड़ी हैं स्कूटी भी खड़ी हैं और खूब सारे लोग दिख रहे हैं।

ये देखिए गाइज हमें इस इमेज में दिख रहा है ये एक बुक की दुकान है जहां एक आदमी टेलर कुछ दिखा रहा है बच्चों को समझा रहे बहुत सारे बच्चे हैं जो बैठे हुए है।

ये देखिए गाइस इस इमेज में हमें दिख रहा है कि हं लकड़ियाँ से ये ये लगाया गया है और बाहर कुछ लोग दिख रहे हैं।